किसिका आदमी सर्विसिंग करते हुए दिख रही है जबकि उसका दूसरा मालिक दिखता रहता है जो एक बेंच पर बैठा हुआ दिख रहा है निचे में कुछ पत्थर बिखरे हुए हैं।